चेयर के सामने काउंटर है काउंटर पे कंपुटर प्रिंटर धरे हुए हैं।

अनेक प्रकार की पेप्सी अनेक प्रकार के बिस्कुट वगैराह मिलते हैं।

टर भी लगा हुआ है और यहां पर एक गेट भी है।

और स्किन कलर के कुत्ते बैठे हुए हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है आदमी के ऊपर--

सूट है और उसके ऊपर एक बलफ लगा हुआ है।

और यहां पर शीशे के गेट लगे हुए हैं गेट के ऊपर स्टर हैं और वाइट कलर की दीवार है।

बिल्डिंग के सामने एन_आई_एफ_सी_ओ लिखा हुआ--

कंप्लीट कर रहा है और--

यह एक घर है घर के सामने एक सिल्वर कलर का गेट है।

यह एक हॉस्पिटल की फोटो है जिसमें--

जहाँ आदमी का बजन के लिए दवाई दी जाती हैं।